जिसमें बहोत सारे जिम का सामान है पीछे बहोत बड़ी फोटो लगी हुई है लाइट का रौशनी आ रही है उसी शीशे में देख के फोटो सेल्फी ले--

आदमी ने कैप पहनी हुई है संतरे कलर की जैकेट है उसके--